दिवार पर हमें अलग-अलग ड्राइंगस बनी हुई दिखाई दे रहीं हैं जिसमें मिक्की माउस --

कुछ छोटे-छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं एक महिला बड़ी दिखाई दे रही है एक पुरुष बड़ा दिखाई दे रहा है पास ही में एक और पुरुष दिखाई दे रहा है।

पास में एक और लाल कलर का भवन नज़र आ रहा है जिसके बाहर येलो शर्ट में इंसान खड़ा नज़र आ रहा है।

द्वार के ऊपर बालकृष्ण शकुंतला स्मृति द्वार लिखा हुआ है।

अन्दर ही हमें कुछ पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं और आने-जाने के लिए पिलर्स का रास्ता बना है।

एक व्यक्ति साइकिल पे दिखाई दे रहा है बस हमें दिखाई दे रही है।

पीछे हमे कुछ बड़े पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

और मशीन्स दिखाई दे रही है। पीछे बड़े पहाड़ भी हमें दिखाई दे रहे।